यह एक गंगा यमुना की फोटो है।

बाल भी बना हुआ है और चेयर टेबल्स भी रखी गई हैं।

सलाद भी रखा हुआ है सभी पीस के नीचे फोइल पेपर रैप किया हुआ है।

यह एक नाई की दुकान है जिसका नाम बाल दाढ़ी स्पा एंड सैलून है।

यहां पर स्नेह ज्योति अन आश्रम का बोर्ड लगा हुआ है।

यह एक पारक है प जहां चारों तरफ हरे--